उसके आस पास कुछ कुत्ते भी बैठा है।

सुरक्षा के लिए ऑरेंज रंग की बाउंड्री बने हुए है।

ये फोटो एक रात का सीन दिखाता है।

बिल्डिंग का शेप थोड़ा सा थोड़ा स्पेसशिप जैसा लगता है।

इस तस्वीर पे हम लोग मजदूर देख सकते है।

जो अपना काम कर रहा है।

ये इमेज एक सुबह का सनराइस सीन्स दिखाता है।

छोटा तलाब है जिसमें आसमां का रिफ्लेक्शन दिख रहा है।

ये इमेज एक फ्लॉवर मार्केट के है।

यहां अलग अलग रंग के फूल बिखरे हुए है।

ये फूल ज्यादातर पूजा डेकोरेशन और फेस्टिवल के लिए यूज होते है।

इस तस्वीर पे एक बंगला का गेट दिख रहा है।

जिसमें हरे रंग का पेंट लगा हुआ है।

जिसमें तिरंगे का रंग लगा हुआ है।

साइड में फूल जैसा डिजाइन बना हुआ है।

इस फोटो में एक बस स्टैंड का सीन दिख रहा है।

यहां पर ग्रीन कलर के बसेस खड़ी है।

एक बूढ़े व्यक्ति अपने बड़ा बैग और झोला लेकर बस में चढ़ रहे है।

जो अपने सामान लेकर बस के तरफ जा रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे इक्विपमेंट देख सकते हैं।

फर्श पर एक टायर और टेबल जैसा दिख सकता है।

साइड पे एक हम रस्सी भी देख सकते है।

ये जगह एक प्राकृतिक पार्क या जू लगता है।

एक बाइक भी जा रही है।

जिनमें सबसे बड़ा जिओ का लोगो है।

ये तस्वीर कुछ बैंक ओपनिंग सेरिमनी की है।

ये एक मंदिर के तस्वीर है।

उस बच्चे ने लाल रंग का टी शर्ट और भूरे रंग का पैंट और काले रंग की चपलि पहना हुआ है।

ये एक बागीचा की तस्वीर है।

जिसमें हड़े भड़े घास पेड़ पौधे हैं।

साइड पे एक हम छोटा सा सड़क देख सकते है।

बागीचे के अंदर लाइटे भी लगाई गई है।

ये एक बहुत खूबसूरत बंगला की तस्वीर है।

जो व्हाइट और ब्राउन कलर की है।

इस बंगलो के साइड पर हम एक छोटा सा गार्डन भी देख सकते हैं जहां पर जहां पर दो छोटे से पेड़ भी लगे गए हैं।

अंदर पे हम लोगों का भी देख सकते हैं।

बाहर एक दो बोर्ड लगी गई है।

ये एक राशन दुकान का तस्वीर है।

ये एक बड़ी दुकान लगती है।

ये फोटो एक घाट एरिया का सीन दिखाता है।

आगे की तरफ पानी कम है बीच में थोड़ा सा जल जमा हुआ है।

दिन का टाइम है और आसपास शांति दिख रहे है।

यहां एक सड़क की तस्वीर दिख रहा है।

दूर पर हम लोगों के झुंड देख सकते है इकन जो एक दूसरे से बात कर रहे है।

इस तस्वीर में हम एक सफेद टोयोटा और ऑटो देख सकते है।

यहां पर बहोत सारे पेर हैं।

और दूर पर हम एक सुंदर सा पहाड़ देख सकते है।

इस तस्वीर में हम एक साफ सा आसमान भी देख रहा है।

इस दृश्य पे हम दो पेड़ भी देख सकते है।

ये एक सरखारी ऑफिस जैसा लगता है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान है।

मैदान के बीच में बहुत सारे हिरण दिख रहे --

ये फोटो एक स्कूल का कॉरिडोर का सीन दिखाता है।

ये एक राशन दुकान की तस्वीर है।

साइड पे हम एक जग भी देख सकते हैं जो वो हड़ा और सफेद रंग का है।

ये तस्वीर दिन में ली गई है।

यहां पर पेड़ पौधे और घास दिख सकते है।

जिसे पीले और सफेद कपड़े में सजाया गया हैं।

जल जिसमें एक आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

सनराइस का आनंद ले रहा है।

अंदर पे बहोत सारी सजावट की गई है।

ये एक मल्टीस्टोरी धार्मिक बिल्डिंग है।

जहां पर हम बहुत सारे लोग देख सकते है।

जिसमें बोरी बोरी मिर्च और सब्जी रखी गई है।

ये सब्जी मिर्च ताजे ताजे दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक स्कूल की खाली क्लासरूम का है।

साइड पर थोड़े पेड़ भी देख सकते है।

एक लड़का एक साइकलिंग मशीन पे एक्सरसाइज कर रहा है।

ये फोटो एक हेरिटेज जैसा आउटडोर सीन दिखाता है।

जिसमें से एक सीधा रस्ता जाता है।

ए एक बड़ा स्तूपा का तस्वीर लगता है।

पीछे एक लंबा सा बिजली का पोल्स देखा जा सकता है।

ये एक मिठाई दुकान की तस्वीर है।

इधर पे मोदक का लड्डू भी दिखाया गया हैं।

ये तस्वीर एक पुरानी महल का है।

ऊपर हम एक फैन भी देख सकते हैं।

यहां पर बहोत सारे बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है।

ये एक समुद्र के तस्वीर है।

जिसमें हम एक बड़ा और छोटा सा बोर्ड देख सकते है।

ये बड़ा बोट दस पंद्रह पैसेंजर को रख सकता है।

ये फोटो एक इंनडोअर सीन दिखाता है।

अंदर कुछ कुर्सियां लगा हुआ है।

कुर्सियां एक साइड में लाइन में रखा गई है।

ये फोटो एक स्ट्रीट सीन दिखाता है।

जो शायद इंडिया के किसी टाउन या सिटी का है।

इस चित्र में हम दो कपड़े की दुकान देख सकते है।

दुकान के बाहर डमी को कपड़े पहनाया हुआ है।

ये एक दुकान की अंदर की तस्वीर है।

सब समान यहां पर नए दिख रहे है।

पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ियां है।

जहां सफेद और लाल रंग के पेंट किए गए हैं।

जो कि किसी चर्च या धार्मिक स्थल में रखा हु है।

जो श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है।

पीछे में बिल्डिंग पर कई गुंबद वाली छत दिख रही है।

ऐसा लगता है कि ये किसी का ऑफिस है ऊपर सीलिंग में एक सी_सी_टी_वी है।

इस चित्र में एक सुंदर सा चर्च दिखाया गया है।

नीचे लोगों का झुंड खड़ा है।

सामने दो बैनर भी दिख जा सकते हैं।

ये तस्वीर एक शॉपिंग कंपलेक्स की अंदर की ली गई है।

सामने एक बच्चों की गाड़ी रखी गई है।

जो हम आगे दो एस्केलेटर भी देख सकते हैं।

यहां माल बहोत साफ सुथरा है।

जिसमें एक कार का बोनेट खुला हुआ है।

ऐसा लगता है कि ये कार रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है।

इस फोटो पे एक सुंदर सा आकृति दिखाया गया है।

जो लकड़ी से बनाया हुआ हैं।

पीछे दीवार सफेद रंग की है।

ये जगह बिल्कुल साफ सुथरा है जहां सफेद और भूरे रंग के टाइल्स लगा हुआ है।

छत पर अच्छी लाइटनिंग का प्रबंध है।

सामने दो आदमी चल रहे हैं।

दोनों में से एक आदमी के पास लाल बैग है।